पेंटिंग का काम कर रही है सामने मशीन दिख रहे है कलरिंग के लिए --

ऊपर नीला आसमान की तरह दिख रही है दिख रहा है।

मकान है जो थोड़ा डिजाइनिंग बनाया हुआ है नीचे साइड में आदमी बैठे हुए हैं फूल भगवानी लगा हुआ है।

आसमानी नीचे लोहा का गेट है।

एक गेट लगा हुआ बाउंड्री है जिसमे टेबल ए-- बेंच लगा हुआ है बीच में फूल-वूल दिख रहा है कचरादानी दिख रहा है भूरा कलर का में ये फर्स में है।

जमिन्दे है जोकि लेआउट घर का लेआउट कर रहे है सामने साइड में ईट दिख रहे है उधर सामने बड़ा अ डबल टिपल छत का बिल्डिंग दिख रहे है यह आदमी है जोकि स लाल जे टी-शर्ट पहना है सफ़ेद पैंट ए काला पैंट पहना हुआ दिख रहा हैं ।